ये गाव बहोत ही खूबसूरत और बड़ा दिखाई दे रहा है दूर-दूर तक बहोत सारे बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं आस-पास में बहोत सी छायी हुई है एक--

कोई नहाते हुए तो कोई कपड़ा खीचते हुए इस दरिये के दूर-दूर तक आसमान भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे है।

अपने ड्राइंग कंपटीशन के लिए यह एक स्कूल का ड्रेस का कलर अलग है किसी का व्हाइट है तो किसी का ब्लू है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रोजेक्ट में ध्यान दे रहे हैं।

दूर-दूर तक बहोत सारे बड़े-बड़े पेड़ पौधे हैंआस पास में एक दो बिल्डिंग भी नजर आ रही है यहाँ पे बहोत सारे पेड़ -पौधे भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे आस पास में बहुत सारे घास और हरियाली भी छाई है।

एक घर बनाया जा रहा है इस घर के में बनाने में बहुत सारे राजमिस्त्री भी लगे हुए हैं तो कोई ईटा उठा रहा है तो कोई सीमेंट उठा रहा है तो कोई बना रहा है।

यहाँ से आसमान भी दो कलर का स्काई एंड व्हाइट कलर के दिखाई दे रहा है इस दरिये के ऊपर से एक पुल भी जा रहा है जिसका कलर व्हाइट है।